और हल्के हल्के यलो कलर के घास दिख रहे है और पेड़ पोधे भी दिख रहे है बहुत सारे लोग आगे दिख रहे रहे है।

सामने अअ बहोत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है ग्रे कलर का बहोत सारे लोग खड़े हुए दिख रहे है चके दिख रहे है।

सामने ग्राउंड दिख रहा है येलो येलो कलर का और ग्रीन ग्रीन कलर का और छोटे छोटे घास उगे हुए दिख रहे है खंभा दिख रहा है सामने अ--

बहोत बड़ा खम्बा दिख रहा है ग्रे कलर मेहरून कलर का इसमें एक खिड़की लगी हुई दिख रही है।